एक कैमरा लगा हुआ है।

लेडी ओर एक मेन जा रहे है बहुत सारे लोग दिख रहे है ऑटो आ रही है एक मुजे --

फोन पे बाते कर रहा है लेटे हुए एक बोतल रखी हुई है।

फेड्रल बैंक के सामने एक लड़का फोटू क्लिक कर रहा है। बै फेड्रल बैंक के --

उसके जस्ट पास मे एक येलो कलर का --

हॉस्पिटल मे एक चेन आ चेनल गेट --

कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है।

वॉकिंग एरियास दिख रहा है।

लकड़ी के नेट लगी हुई दिख रही है जस्ट पेड़ के पास --

मुझे इस इमेज पे एक शोरूम दिख रहा है जोकि --

यह शोरूम है जो कि कांच से बना हुआ है। एंटरेस पे --

मछलीया सेल कर रहे है। बहुत सारे ग्राहक खड़े हुये है।

डिस्कसन कर रहे हैं। एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे।